मारे सामने एक मंदिर देखने को मिल रहा है मंदिर के अंदर एक--

व्यक्ति बैठा हुआ है मंदिर के बहार एक जैसा बना हुआ है जिसके ऊपर--

इनमे हमे इस चित्र में एक ऊपर में पानी टंकी देखने को मिल रहा है साइड में हमे एक सीढ़ी देखने को मिल रहा है।

यहाँ पर हमे एक लोहे का एक झुलवा देखने को मिल रहा है एक ऐ--

हमारे सामने एक गेट देखने को मिल रहा है गेट के उधर हमे एक स्कूटर देखने को मिल रहा है गेट के उधर हमे एक--

ट्रक देखने को मिल रहा है वही पर हमे बोर्ड भी देखने को मिल रहा है।

हमारे सामने एक स्टेशन देखने को मिल रहा है। यहां पे सामने में हमें एक मालगाड़ी ट्रेन लगा हुआ देखने मिल रहा है।

पाइप भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर हमे स्कूटर भी देखने को मिल रहा है और मोटरसाइकिल भी देखने को--

ठेला देखने को मिल रहा है ठेला के बगल में हमे एक छोटा सा वाइट कलर एक फ़ोन देखने को मिल रहा है वही पर हमे एक--

हमारे सामने एक कैंटीन का फोटो है जिसके आगे में बहोत सारा गमला रखे हुए है।

हमारे सामने एक घर देखने को मिल रहा है घर के बगल में एक सीढ़ी बना हुआ है सीढ़ी के बगल में--

आई लव पांडा लिखा हुआ है उसके ऊपर बहोत कलरफुल डिजाइनिंग बनाए हुए है यहाँ पर बहोत अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है।

अंदर में एक लोहे का गेट बनाया गया है जिसके ऊपर एक पाइप डाला गया है लोहे का ऊपर में पानी का टंकी डाला गया है ।

हमारे सामने एक चॉकलेट केक रखा हुआ है इस केक के ऊपर डेरी मिल्क रखा हुआ है वही पर एक--

हमारे सामने एक सैलून का फोटो है जिसके बहार में बहोत सारे बैलून लगा हुआ है वहा पर एक आदमी बहोत सारे खड़े है।

बहोत सारे मोटरसाइकिल लगे हुए है उसके अंदर में एक सीढ़ी लगा हुआ बना हुआ है।

घर बाकि बना हुआ है मैगनेट टाइप का उसके साइड में एक सीढ़ी बना हुआ है।

पेड़ लगे हुए है वही पर एक झोपडी भी बना हुआ है ऊपर में कंडेंसर भी लगा हुआ है।

हमारे सामने एक वाटरपार्क का फोटो है वाटरपार्क के ऊपर एक एलवेस्टर वाला--

कमरा के सामने एक बस स्टैंड का पिक्चर है जहा पर बहोत सारे बेंच रखा हुआ है यहाँ पर बहोत सारे--

हमारे सामने एक मोटरसाइकिल देखने को मिल रहा है मोटरसाइकिल के बगल में हमे एक--

सीढ़ी देखने को मिल रहा है जो की सीढ़ी वाइट कलर से इसके साइड साइड अंदर बाउंड्री सुनेरा गया है।

डैम के आस पास में बहोत सारी सीढ़ी बने हुए है डैम के पास में वहा पर नदी बने हुए है वहा पर बहोत सारे पेड़ लगे हुए है।

और हमारे सामने एक पंडाल देखने को मिल रहा है उसके बहार में हमे एक कृष्ण जी का मूर्ति देखने को मिल रहा है।

वहा पेड़ में बहोत सारे लाइटिंग देखने को मिल रहे है वहा पर हमे एक द्वार देखने को मिल रहा है हमे वहा पर एक भ-भूतिया को देखने को मिल रहा है।

साइड में एक तार पर पेड़ भी उगे हमे वहा पर देखने को मिली रहा है वहा--

आपके बीच में बड़ा सा पूल बना हुआ है चुनी टाइप का बना हुआ है पार्क के आस पास में बहोत पेड़ लगे हुए है वही पर--

आप के अंदर बहोत सारे आदमी है जिन्होंने वाइट कलर की टी-शर्ट पहन कर एक्सरसाइज कर रहा--

मछली के अकार में पियानो देखने को मिल रहा है ऊपर में हमे ऐ--

हमारे सामने एक जंगल जाने के अंदर का फोटो है उसके बहार हमे एक गी-ग्रिल देखने को मिल रहा है ग्रिल के--

आस पास हमे यहाँ पर बहोत सारे पेड़ देखने को मिल रहे है वही पर हमे--

कंप्यूटर भी देखने को मिल रहा है नीचे में साइड में हमे--

हमारे सामने एक गोबी देखने को मिल रहा है हमे यहाँ पर परवल देखने को मिल रहा है।

यहां पे हमें आलू देखने को मिल रहा है यहीं पे हमें गोभी देखने को मिल रहा है।

पियाज़ दखने को मिल रहा है अंदर मे हमे केला देखने को मिल रहा है वहां पर हमे भटिया प्लास्टिक का--

हमारे सामने एक पार्क का फोटो है पार्क के फोटो के बिच में एक लोहे टाइप का स्ट्रक्चर का बना हुआ है जो एक्सरसाइज करने वाला--

बहोत बड़े बड़े और घने घने पेड़ लगे हुए है पार्क के साइड में लैंप लगा हुआ है।

भगवान् देखने को मिल रहा है वही पर हमे ऊपर में एक राक्षस का फोटो देखने को मिल रहा है काली जी का--

साइड में हमे एक थराम देखने को मिल रहा है पास में हमे एक चेयर देखने को मिल--

हमारे सामने बहुत बड़ा स्टूल देखने को मिल रहा है स्टूल की इस तरफ हमें पिलर देखने को मिल रहा है दिवार के इस तरफ हमें--

तार देखें को मिल रहा है नीचे में तार के पैर देखने को मिल रहे है यहाँ --

ऊपर लोहे का वाइट कलर का मेडिकेटिंग पाइप बना हुआ है जो की आदमी--

हमारे सामने एक रोड का इमेज है रोड के बगल में बहोत सारा टेम्पू लगा हुआ है वहा पर होटल हमे देखने को मिल रहा है।

बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं उसके आसपास बहुत सारे चेयर रखे हुए हैं उसके ऊपर बैठने वाले साइड में बहुत बड़े--

उसके बगल में हम लोग यहाँ पर सीढ़ी देखने को मिल रहा है।

टीवी के बगल मे हमे डस्टबिन देखने को मिल रहा है जो की आसमानी कलर का है वही पर हमे पोल देखने को मिल जिस के ऊपर--

टेंथ की अध्याय है यही पे हमें नजर आ रहा है।

कम्प्यूटर रखा हुआ है वही पर एक वाटर बोतल रखा हुआ है माउस रखा हुआ है पास मे हमे एक प्रिंटर दिखने को मिल रहा है वही पर हमे दो दो--

शर्ट पेहनी हुई है उसने बगल मे एक पेअर लगा हुआ है वहाँपे बहुत सारा--

उसके ऊपर एक बोहोत सारे पूल है पूल के उपर बोहोत सारे अदमी खड़े है उसके साइड में--

बहोत सारे मोटसाईकिल देखने को मिल रहे है हमे यहा पे मुविल देखने--

हमारे सामने बहोत सारे लोग देखने को मिल रहे है जिन जिन्होंने सबके हाथ में डमरू जेसा ढोलक सजा हुआ है सब आदमी--

हमारे समाने एक कुटिया देखने को मिल रहा है जिसके उपर एक लाल रंग का झंडा लगा हुआ है।

पास में हमे बहोत सारे हरे हरे हमे वहा पर पेड़ देखने को मिल रहे--

हमारे सामने यहा पे कार्बोअर्द देखने को मिल रहा है कार्द्बोअर्द के उपर हमे --

ॐ देखने को मिल रहा है ॐ के पास में हमे यहा पे--

पान देखने को मिल रहा है यही पे हमे एक बहोत सारे पेपर के कटे हुए डिजाईन देखने को मिल रहे है।

इसके बगल में बहोत सारे पत्थर रखे हुए है उसके आस पास बहोत सारे बाश लगे हुए है वहा पे--

हमारे सामने एक मंदिर का फोटो हमे देखने मिल रहा है मंदिर के फोटो के उपर--

और सभी की बने हुए है यहा पे राक्षस का मुह्ह बना हुआ है पास में एक शेर का फोटो बना हुआ है अंदर में--

तुमरे सामने एक मेर्रिज बियुरो स्पोटर आर्टिस्ट है यहा पे बहोत सारे चेयर रखे हुए है।

व्ही पे बहोत सारे टेबल रखे हुए है अंदर में एक सोफा रखा हुआ है।

अंदर में लाइटिंग की व्यवस्था की गई है ऊपर में बहुत अच्छे फूल से इसे सजाया गया है।